यह कोई कंपनी वगैरा दिखाई दे रही है।

यहां पर एक टेंट दिखाई दे रहा है यहां पर कुर्सी --

यहां पर बहुत सारे आदमी व लेडीज और यहां पे एक शीशा भी दिखाई दे रहा हैं।

और कुछ डब्बे और चप्पल के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह कोई इंजीनियर दिखाई दे रहा है जो कुछ चेक कर रहा है लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है यहां पर एक ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड एक व्यक्ति और दिखाई दे रहा है।

खिड़कियां और लाइट और बरदे भी दिखाई दे रहे हैं।

स्कूटी और कुछ बाइक और साइड में एक और दुकान भी दिखाई दे रही है।

यहां पर और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक गाड़ी धोने की दुकान है और यहां पर एक और दुकान है यहां पर कुरकुरे हैं।

यहां पर एक पाइप से गाड़ी धो रहे हैं यहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और यहां पर कुर्सी पड़ी हुई है।

यहां पर कितने सारे लेडिस और जेंट्स खड़ी हुए है यहां पर की--

इतनी सारी रिक्शा खड़ी हुई दिखाई दे रही है।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

उम् लेडिस के हाथ में कुछ पन्नी है हरे रंग की और यहां पर चप्पल पड़ी हुई है।

यहां पर पर्दे और गेट भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक बाइक भी दिखाई दे रही है।